इंग्लिश में इसे प्रोनस कहते हैं।

जिसे जमीन पे बड़े से मैदान में किया जा रहा है।

यहाँ हम अपने सामने जो तस्वीर देख रहे है इस --